ये एक हाईवे रोड दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारे ट्रक चल रहे हैं एक ट्रक का कलर पिला है आगे कुछ नीला सा दिखाई दे रहा है।

रोड का कलर ब्लैक उसमें व्हाइट पत्ता दिखाई दे रहा है यहां से आसमान भी दिखाई दे रहा है एक खंभा दिखाई दे रहा हैसामने कुछ घर और बिजली का खंबा नजर आ रहा है।

और कुछ मूली और कुछ गाजर भी दिखाई दे रही है और उसी ब्लैक में कुछ सिल्वर कलर का पन्नी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहा पहाड़ दिखाई दे रहे है बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैऔर ग्रीन कलर की घास भी दिखाई दे रही है ब्लैक कुछ और सा दिखाई दे रहा है इसके नीचे जमीन पे थोड़ा सा--

पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है यहा कुछ सु--सुखी टहनीया भी नजर आ रही है व्हाइट कलर के कुछ फूल भी दिखाई दे रहे है यहा से आसमान भी दिखाई दे रहा है।

लड़कियों ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी है ऑरेंज कलर की जैकिट पहनी है कुछ लकड़िया नाव के उपर रखी हुई है एक भैया है फिरोजी शर्ट पहना ब्लैक जिन्स --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

कुछ लाइट जल रही है और यहां पे इसके दीवारे पीले कलर की दिख रही है कुछ क्रीम कलर की कुछ ग्रे कलर की दिख रही हैं रात का समय हैं।

आसमान भी दिखाई दे रहा है बिजली का खंभा भी दिखाई दे रहा है ये रास्ते में पीला सा कुछ दिखाई दे रहा है इसके बाजू में एक छोटा सा पार्क बना हुआ--

जो व्हाइट कलर की जिस मे ब्लैक कलर का दरवाजा लगा हे दो खिड़की उस तरफ दिखाई दे रही हे किस तरफ दिखाई दे रही हे इधर सफेद पोता हे।